दो साड़ियां सामने ही डिस्प्ले में लगी हैं।

पीछे की तरफ हरे पेड़ दिख रहे हैं।

बाहर कार और गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है।

सामने जामनी रंग का गेट है।

यहाँ बड़ी-बड़ी एलईडी टेवियां रखी हुई है।

एक बड़ा खूबसूंदर सा पार्क नजर आ रहा है।

दो व्यक्ति खड़े बात कर रहे हैं।

ये होटल बहुत बड़ा लग रहा है।

बाहर एक्टिवा पे लड़का बैठा है अंदर कुर्सी पर भी एक व्यक्ति बैठा है।

सामने तीन पानी की बाल्टी रखी हुई है।

इस चित्र में एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक टेबल रखी दिख रही है।

इस क्षेत्र में एक साड़ी की अग्रवाल साड़ी--

इस चित्र में एक शटल भी दिख रही है।

दिख रही है अंदर बना है।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

ढापा दिख रहा है आसपास शटर लगा है नीले रंग का रंगाव --

बेड रखा हुआ है नीले रंग की लाइट जल रही है।

इस चित्र में एक मकान बनता--

एक मेडिकल जैसा दिख रहा है।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

बहोत ही पुराना लग रहा है।

जो बहुत सुंदर बना है सफेद रंग का--